--और ये काफी सारे पौधे-पेड़ है और घासे हैं काफी सारी--

और कुछ ह्म्म्मम्म स्टेचूस हैं जो किया काफी सारे कपड़े --

और लाइट सनलाइट दिखाई दे रही है।

और अ पीछे काफी सारे पेड़-पौधे मैदान है और यहाँ पे कुछ लोग इसे देखने आए हैं काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और सनलाइट है।